लाइट जो अलग अलग कलर्स है व्हाइट पिंक ऑरेंज कलर से लाइट भी दिखाई दिया है दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर --

बहुत ज्यादा गारी है ब्लू कलर का एक ठू है और आब ब्लैक कलर का एक है व्हाइट का है स्कूटी है।

बहोत ज्यादा लाइट भी दिखाई दे रहा है।

भी दिखाई दे रहा है और बैलून रेड और सफेद का बैलून बहोत ज्यादा दिखाई दे रहा--

व्हाइट कलर का चेयर में प्लास्टिक चेयर में बहुत ज्यादा आदमी बैठा हुआ है।

और बहुत ज्यादा आदमी भी है।

ये एक दुकान है इसमें वाइट कलर का पेंटिंग किया हुआ है।

और आईना भी है फ्रेम भी है छोटा छोटा बोतल लोग भी है।

ये एक दुकान है इसमें वाइट कलर से पूरा पेंटिंग किया हुआ है एक ठो स्पीकर दिखाई दे रहा है।

कुछ चेयर हैं दो गाड़ी पार्किंग करके रखा हुआ--

और उसका ऊपर में एक ठो लाइट है।

इसमें व्हाइट कलर का एक ठो साइनबोर्ड दिखाई दे रहा है।

घर का ऊपर में सोलर प्लेटें और एक ठो सोलर भी है।

ये एक जगह है जिसमें सफेद कलर का एक ठो गाड़ी दिखाई दे रहा है।

और साथ में एक ठो सोफा भी है।

है टेबल का ऊपर में एक ठो ब्लू और ब्लैक कलर का बैग दिखाई दे रहा है साइड में एक लड़की खड़ा कर रहा है पिंक और व्हाइट कलर का कपड़ा पहन के।